जिसमें हमें लाल गुलाबी सफेद रंग के फूल दिखाई दे रहे हैं।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

काफी सारी भीड़ नज़र आ रही है।

चोको बार और मिल्की बार का फोटो लगा हुआ है।

इस चित्र में हमें एक नाई की दुकान दिखाई दे रही है जिसमें कुछ लोग बैठे हुए हैं।

एक आदमी शैविंग करवा रहा है।

कुछ लोग नजर आ रहे हैं जो मछली बेचते हैं।

इस चित्र में हमें एक मॉल दिखाई दे रहा है और कुछ लोग नजर आ रहे हैं।

एक पाइप की बनी बालकनी पर खड़ा है।

और एक चेंजिंग रूम दिखाई दे रहा है।

जिन्होंने गोल्डन जोगा पहना है।

इस चित्र में एक ए_टी_एम दिखाई दे रहा है।

एक बड़ा पेड़ नजर आ रहा है।

इस चित्र में हमें एक सुनहार की दुकान दिखाई दे रही है।

पार्क के रास्ते मे लंब नजर आ रहा है कुछ घास दिख रही है छोटी छोटी--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

पीछे कुछ पेड़ नजर आ रहे हैं।

एक आदमी बैठा है जिसने काले रंग के शर्ट पहने हैं।